कितने लोग आए हैं। सब लोग अपना पर्ची ले लेके के खड़ा हैं। डॉक्टर लिख रहे हैं। सब को दवा दे रहे हैं।

यहाँ पे एक मंदिर है वह विष्णु भगवान का मंदिर है विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का कितना सुन्दर मंदिर है।

घर बनाया गया है। बोहत सुन्दर डेकोरैशन हुआ है इसका।